और अच्छा लगता है सबसे अच्छा समान था।

ये देखने में बहुत अच्छा लगता है भारत लिखा है और पहाड़ जैसा देखने में अच्छा लगता है।

देखने में बहुत अच्छा लगता है देखने में बहुत अच्छा लगता है सब चीज में बड़िया है देखने में बहुत सूंदर लग रहा है अच्छा है और ट्रैक्टर भी है पावर का

ये देखने में बहुत अच्छा लगता है देखने में बहुत अच्छा लगता है गेट बना है देखने में बहुत अच्छा लगता है।

कपड़ा का बहुत बनिया है देखने में बहुत अच्छा है कपड़ा का दूकान चल बहुत बड़िया है देखिए

ये बहुत अच्छा-सा बना है बहुत बनिया लग रहा है देखने में भी बहुत सूंदर लग रहा है अच्छा है देखने में भी अच्छा है।